दिख रही है और फुलमाले दिख रहे हैं।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

चित्र में मुझे हर कलर की कुर्सिंया पर नज़र आ रही है।

चित्र में मुझे सब्जी की शॉप दिख रही है।

बल्ले दिख रहे है और चित्र में मुझे--

चित्र में मुझे बड़ा सा हॉल दिख रहा है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है।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

चित्र में मुझे पंडित जी दिख रहे है।

चित्र में मुझे मैहर के स्टेशन का गेट दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक स्कूटी दिखाई दे रही है।

चित्र में मुझे कुछ वायर के बंडल रखें दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे कुछ लोग नहाते हुए दिख रहे हैं।

चित्र में मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक बस दिख रही है।